ये एक डिलेक्स इलेक्ट्रिक का एक दुकान है यहाँ बहुत बड़ा एक हॉल है दोनों साइड दुकान है यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है।

पुल के साइड एक बड़ी गाछ है और पानी भरी हुई है।

यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम क्रिएटिव माइंड्स पब्लिक स्कूल है स्कूल के आगे दो गाड़ी राखी हुई हैं।

ये एक बर्तन की दुकान है दुकान में बहुत सारे समान हैं मिक्सी रखी हुई है बाल्टी रखी हुई है।